बहुत बड़का फील्ड है बीच मे एक कब्रिस्तान जैसा है।

ऐंगल जैसे तार है ऊपर में लाइट बत्ती है पूल के ऊपर में बिजली तार है बहुत।

इधर एकठो झण्डा रखल है।

रास्ता है उसपार पेड़ लगल है ई पार एक गो आलमारी में गद्दा रखल है।

खंबा है दु तीन गो ऊपर मे की पोल रखल है आगे मे दरी बिछाल है।